ये एक बिरयानी की शॉप है यहाँ पर बिरयानी और चिकन रखे हुए हैं और पास में एक गिलास रखा हुआ है और यहाँ पर कोई बिरयानी खाने के लिए नहीं है ऊपर देखने को मिल रहा है यहा पे पंखा हैं।

कर रही है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

और जो इसका बैकग्राउंड देकने में बहुत खूबसूरत है और लड़का --

ये ओवर ब्रिज है जहाँ पे बहोत सारी बहोत सारी बस गाड़ियाँ लगी हुई है कुछ औरतें ऑटो से उतरी हुई है कुछ बच्चे भी हैं जो किसी का इंतजार कर रहें कोई खा रहा है तो कोई घूम रहा है कोई खड़ा होके बात कर रहा है।

ये एक मंदिर है मंदिर में बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है लाइटिंग भी लगा हुआ है यहां पे कुछ औरतें बैठी हुई है कुछ कुछ औरतें खड़ी हैं कुछ यहाँ पे ठेला लगा हुआ हैं कुछ खा रहे हैं इंसान और कुछ घूम भी रहे हैं मंदिर बहोत ही अच्छा हैं।

कुछ दिखाई भी मछली दे रहा है।